तथा दाएं और एक छोटा सा गुमटी बना हुआ है जिसे त्रिपाल से घेरा गया है।

इसमें कई सारी खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही है।

यहां सामने की ओर एक बड़ा सा बिस्तर लगा है।

इस पर गुलाबी कलर के फूल वाले बेडशीट बिछे हुए है।

एवं एक ड्रॉअर भी है उसके ऊपर एक ग्रे कलर का टी_वी तथा--

तस्वीर में एक शख्स जिसने लाल कलर की शर्ट एवं काले रंग की पैंट पहन रखी है।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

काले रंग के अक्षर से आर एन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर सफेद कलर का ए_सी लगा हुआ है।

तथा उसके बगल में नॉर्मल स्टेप वाली सीढ़ी भी लगी हुई है।

सेल किसी दुकान के बाहर की है जहां हमें ऊपर की ओर--

को ऑप्टेक्स नंबर बयासी हजरतगंज लखनऊ बाइस छह हजार एक लिखा हुआ दिख रहा है तथा नीचे वाले पर--

एवं पीछे की ओर कई सारी महिलाएं नजर आ रही हैं।

जो टू व्हीलर बाइक के शोरुम का है यहां हमें कई सारी गाड़ियां--

दाईं ओर पारदर्शी शीशे लगे हुए हैं।

यहां कुछ लोग भी मौजूद है एवं दाई ओर एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है जिन्होंने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा है।

तस्वीर में पीछे की और एक भवन दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक बड़ा सा नीले रंग का बोर्ड टंगा हुआ है।

बाईं और कई सारी गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं।

शीशे के बने गिलास एक सफेद कलर का फ्लॉवर पॉट --

डिजाइंस बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके ऊपर सिल्वर रंग का हैंडल लगा हुआ है।

उसके बगल मे पानी गर्म करने वाला केतली एवं दो बोतले नजर आ रही है जिस पर--

में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को सजा कर रखा गया है।

फिर वहां में एक जगह दिखाई दे रही है जो चारों तरफ पानी से भरी हुई है।

शिविर में सामने की ओर स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही--

यहां कई सारे बिजली के तारे भी नजर आ रही है।

एक पानी का सफेद रंग का टैंकर भी दिखाई दे रहा है।